सामने एक व्यक्ती बैठा है व्यक्ति ने--

बड़ा सा मैदान है वहां पे एक औरत खड़ी हुई हरी रंग की साड़ी पहेनकर--

चारो ओर बाउंडरियाँ है। जो लोहे के बनी हुई है। बीच में गेट लगा हुआ है। जो लोहे का है। काला कलर का पुता हुआ है।

सामने एक हाल है वहां पे दो कुर्सी रखी हुई हैं कुर्सियों के सामने टेबल रखी है।

सामने रोड बनी है रोड के पास एक इमारत है।

सामने दुकान है दुकान में टेबल रखी हुई है।

और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं चारों ओर--

में रखे हुए हैं ए_सी लगी हुई है बहोत सारी लाइटें जल रही है स्टैचू खड़ा है।

सामने मंदिर बना हुवा हैं चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे पौधे भीं हैं।

सामने बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है।

बहोत सारी बाउंड्री है जो लोहे की लगी हुई लोहे की बाउंड्री में बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

एक बड़ा मैदान है मैदान में बहोत सारे व्यक्ति हैं सभी लोग व्ययाम कर रहे हैं।

सामने की ओर एक व्यक्ति खड़ा है जो सफेद कलर की टी शर्ट पहना है।

सामने ईटे की दीवाल बनी हुई उसमें पिलर भी है चारों ओर पेड़ लगा हुआ है।

सामने स्टेज बना हुआ है स्टेज में बहुत सारे फूल हैं सभी फूल अलग अलग कलर के हैं ऊपर की ओर लाइट जल रही है।

और लाइट जल रही है ए_सी लगा हुआ है।

सामने एक महिला खड़ी हुई है पौधे के पास--

वहाँ पे बहोत सारे व्यक्ति कुछ खड़े हुए हैं। कुछ बैठे हुए हैं। जिनमें से कुछ महिला हैं और कुछ पुरुष हैं। ऊपर की ओर बहोत सारे बल्ब हैं। सभी बल्ब जल रहे हैं।